ये काफी बड़ी बिल्डिंग लग रही बिल्डिंग है लग नहीं रही ओर बट ये नहीं पता ये वो कोई यूनिवर्सिटी है या फिर होस --

हॉस्पिटल है क्या है यह तो तब पता चलेगा जब हम जब हम कोई बोर्ड पढ़ेंगे बट यहाँं पर कोई बोर्ड नहीं दिख रहा है मुझे इस साइड से जिस साइड से देख रहे हैं।

एक ब्लू कलर की कार खड़ी है पता नहीं कौन सी होगी एक साईकिल खड़ी है एन्ड एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई है दो बाईक्स खड़ी हुई है एन्ड इससे थोड़ा आगे को भी एक कार खड़ी हुई है।